यहाँ पे देखिये चम-चमाते हुए बहुत अच्छा है। यहाँ पे बेगुसराय इधर के जी फाइव स्टार होटल दिख रहा है आपको ।

ये बहुत अच्छी होटल है। इसमें आप रह सकते है। इसमें देख लीजिये विवाह भी होता है। यहाँ पे --

ये बहुत अच्छी मूर्तियां है। यहाँ पे आप सचमुच इसमें भगवान है। मूर्तियां नही इसको भगवान बुलाया जाता है। और इसमें सचमुच भगवान --